ऊपर दीवार में एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा है बगल में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी व्हाइट कलर का टीशर्ट पहन कर कुछ कर रहा है।

रैक पर एक ही कलर के कपड़े एक साथ मोड़ कर रखे हुए हैं।

नीचे और भी कुछ सामान रखा हुआ है।

बाहर में एक कार खड़ी है।

बाहर में कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है।

बाहर में बैरीकेट भी लगा हुआ है बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

उसने ब्लैक कलर का टी शर्ट और वाइट कलर की जूती पहनी हुई है।

बगल में रैक आया उस पर सामान भी रखा हुआ है।

ऊपर में लाइट भी लगा है सामने एक लेडीज कुछ कर रही है।

सर एक शर्ट और काला जींस पहने हैं।

ऊपर में कुछ पेटी में भी रखा हुआ है।

यहां पर ढेर सारे लोग काउंटर के पास खड़े हैं।

नदी के बीचो बीच बहुत मोटे मोटे पिलर दिए गए हैं।

सामने एक छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा है उसने शर्ट और जींस पहना है।

बहुत सारा दुकान भी दिख रहा है कुछ दुकान के ऊपर पोस्टर भी लगा हुआ है।

दरवाजे का कलर रेड है।

बार में बहुत सारी औरतों का भीड़ है।

मंदिर के ऊपर झंडा और चोंगा लगा हुआ है।

ऊपर में लाइट भी लगा है।

सामने किसी का बारात जा रहा है बगल में एक घर है जिसका कलर व्हाइट है।

पीछे जमीन कोड़ने का मशीन लगा है।

सभी लोग फोटो घिंच रहे हैं।

नीचे फर्श पर ब्लैक कलर का टाइल्स लगा है।

सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है।

पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं अगल बगल बहुत सारे लोग हैं।

सामने एक शृंगार स्टोर है जहां पर बहुत सारी समान रखा हुआ है रेक पर।

यहां पर एक आदमी भी बैठा है जिसने ब्लैक टी शर्ट पहना है।

बगल में एक टावर भी है जिस पर से बहुत सारे तार गुजरे हुए हैं।

सामने एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है।